और अब लोग इसको देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर सेल्फी वगैरह कई चीज़े करते हैं।

और इसकी निगाहें अपनी ओर एकाग्रता बिल्कुल बहोत तेज़ होती है।

ये एक पूजा-पाठ का की तरीके उम्म नदी होती है।

और इस जगह पर ज्यादातर जाम का झाम लगा ही रहता है।

और ऐसी ही तरह की चीजें हमें प्रतिदिन देखने को मिलती है कि जाम हमेशा लगना ये नॉर्मल बात होती है।